यह एक टोटो का शोरूम है यहाँ पर टोटो मिलता है और अच्छी-अच्छी क़्वालिटी में मजबूत होते हैं टोटो टोटो में --

बैठने मे स्वच्छ फील होते हैं और टोटो तीन चक्के होते हैं टोटो शोरूम का नाम एस.के. आल्टो है ।

और सभी बच्चे अपने-अपने मॉडल बनाने में बिजी हैं। अपने मॉडल बनाने के लिए बहुत ही मेहनत कर रहें हैं।

और बस अभी खड़े हैं और बहुत चले भी गए हैं।